इस इमेज में सामने एक एक लड़की गा कार खड़ी हुई है जिसके पीछे में तीन बड़े बड़े झाड़ियां हैं और उसके पीछे में शायद इलेक्ट्रिसिटी हाउस दिखाई दे रहा है।

और सीधे दीवाल में जो रेघ बनें हुए है उसके ऊपर में बहोत सारे टेडी रखा हुआ है।

सामने मुझे एक लोहे का गेट दे रहा हैं जिसमें जंग लगा हुआ दिख रहा है।

दो तकिया है और उसके बगल रखा हुआ है।

और तीन कैंडल भी जलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो नीचे की तरफ है और पीछे रैक पे--

ब्लैक कलर ब्राउन कलर कलर --

योग करने वाला जो एक्सरसाइज करने वाला जिस जो लगा रहता है वो सेट गए--

ये किसी जू का तसवीर दिखाई दे रहा है जिसमें काफी सारे हिरण--

ये उसी प्राइस में बड़े बड़े हेडलाइट भी दिख रहे हैं जो क्रिकेट के मैदान में लगे रहते काफी सारे यहां पे--

एक स्त्री और पीछे के दो बच्चे है जो वाइट कलर में शर्ट शर्ट पैंट पहने हुए है सामने एक बोर्ड है जिसमें --

रायपुर इंस्टिट्यूट ऑफ़ कॉलेज का ग्राउंड है जिसमें एक--

ये सब नया किसी स्वीट शॉप का--